है जिस जिसमें घर निर्माण कर करवा रहे हैं और रेता रखा है गिट्टी रखा है।

एक डाक घर है बै बैंक पोस्ट है जिसमे ए_ एक चाइना गेट लगा हुआ है।

मा चना छोला डेरी ई डेरी फ़ूड्स हैं जिसमे ए केला रखा हुआ हैं।